दो व्यक्तियों ने श्वेटर पहनी हुई है ।

इस दृश्य मे एक कैंपस दिखाई दे रही है।

वहां पे एक फ्रिज भी रखा हुआ है फ्रिज के ऊपर बोटल रखा हुआ है।

स्कूल में पेड़ भी लगे हुए हैं।

उस बैनर में केक का प्रिंट भी किया हुआ है।

यहां बाहर कांच के दरवाजे लगे हुए हैं।

सोफे के पास एक टेबल भी लगी हुई है।

पास में एक टेबल भी लगा हुआ है।

टेबल के ऊपर टिशू पेपर रखा हुआ है।

इस दृश्य में पहाड़ दिखाई दे रही है जिसके आसपास बहुत सारे पत्थर भी हैं।

इस दृश्य में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

यहां पे तीन गमले रखे हुए हैं तीनों गमलो में पौधे लगे हुए हैं।

इस दृश्य में एक लड़की दिखाई दे रही है ।